बस पेड़ दिखाई दे रहें पेड़ के लकड़ी के तने दिखाई दे रहें हरे -भरे पेड़ दिखाई दे रहें हैं।

यहाँ पर बड़े-बड़े पेड़ हरे रंग के ऊँचे- ऊँचे दिखाई दे रहे है| सामने बादल भी दिखाई दे रहे है| सफ़ेद काले रंग के है| बड़ा खूबसूरत दिखाई दे रहा है।

इस चित्र के अंदर हमें एक कारखाना दिखाई दे रहा है जहां पर एक कार रखी हुई दिख रही है नीले कलर का बॉक्स डब्बा या टंकी दिख रही है कुछ मशीने दिखाई दे रही हैं।

जो दुकाने दिखाई दे रही जिस पर शटर लगे हुए दिख रहे इसके पास में हरे कलर रंग के डिब्बे का जनरेटर लगा हुआ दिख रहा है। सामने किसी कि प्रतिमा लगी हुई दिख रही है।

मैदान में घासे हरी और कत्थई रंग की दिखाई दे रही है।

एक कटोरी में चटनी हरे रंग की इसमें चम्मच लगा हुआ दिखाई दे रहा है नीचे एक कारपेट बिछा हुआ दिख रहा है।

सामने पेड़ लाइन से लगे हुए हैं हरे-भरे पेड़ दिखाई दे रहे हैं और बाद-बादल सफेद हैं।